इस फोटो में काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है ठीक है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कारपेट बिछा दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही है।

अर पीछे की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे है दो पेड़ दिखाई दे रहे है जोकि गिरे हुए है।

फर्श पे ब्लैक कलर की टाइल लगी हुई है और जिम का ये फोटो है।

नीचे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है नाइन फोर वन सिक्स जीरो फाइव सेवन वन जीरो वन ।

कुछ कट्टा दिखाई दे रहा है।

एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है एक कारपेट पिंक हैं एक ऑरेंज हैं और एक पर्पल कलर का है।

काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

साथ ही साथ इस फोटू में--

और हमको दिन का समय दिखाई दे रहा है।

हां इस फोटू में काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं पीछे लिखा है एक नोटिस बोर्ड --

और ये सभी बच्चे मे को मुसलमान लग रहे हैं।

ऊपर लिखा है अंडरवियर्स ब्रा पेंटी स्लिप --

जो है पत्थर डला हुआ है अंदर की तरफ टाइल लगी दिखाई दे रही--

एक तिरंगा लगा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में काफी सारे ट्रे मग गिलास दिखाई दे रहे है।

काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।